मेरे प्यारे देशवासियो नमस्कार
हमारा देश इन दिनों एक तरफ वर्षा का आनंद ले रहा है तो दूसरी तरफ हिंदुस्तान के हर कोने में किसी ना किसी प्रकार से उत्सव और मेले दीवाली तक सबकुछ यही चलता है और शायद हमारे पूर्वजों ने ऋतु चक्र अर्थ चक्र और समाज जीवन की व्यवस्था को बखूबी इस प्रकार से ढाला है कि किसी भी परिस्थिति में समाज में कभी भी लुलनेस ना आये
पिछले दिनों हम लोगों ने कई उत्सव मनाये
कल हिन्दुस्तान भर में श्री कृष्ण जन्ममहोत्सव मनाया गया
कोई कल्पना कर सकता है कि कैसा व्यक्तित्व होगा कि आज हजारों साल के बाद भी हर उत्सव नयापन लेकर के आता है नयी प्रेरणा लेकर के आता है नयी ऊर्जा लेकर के आता है और हजारों साल पुराना जीवन ऐसा कि जो आज भी समस्याओं के समाधान के लिए उदाहरण दे सकता हो प्रेरणा दे सकता हो हर कोई व्यक्ति श्री कृष्ण के जीवन में से वर्तमान की समस्याओं का समाधान ढूंढ सकता है
इतना सामर्थ्य होने बावजूद भी कभी वो रास में रम जाते थे तो कभी गायों के बीच तो कभी ग्वालों के बीच कभी खेलकूद करना तो कभी बांसुरी बजाना ना जाने विविधताओं से भरा ये व्यक्तित्व अप्रतिम सामर्थ्य का धनी लेकिन समाजशक्ति को समर्पित लोकशक्ति को समर्पित लोकसंग्राहक के रूप में नये कीर्तिमान को स्थापित करने वाला व्यक्तित्व
मित्रता कैसी हो तो सुदामा वाली घटना कौन भूल सकता है और युद्ध भूमि में इतनी सारी महानताओं के बावजूद भी सारथी का काम स्वीकार कर लेना
कभी चट्टान उठाने का कभी भोजन के पत्तल उठाने का काम यानी हर चीज में एक नयापन सा महसूस होता है और इसलिए आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो मैं दो मोहन की तरफ मेरा ध्यान जाता है
एक सुदर्शन चक्रधारी मोहन तो दूसरे चरखाधारी मोहन
सुदर्शन चक्रधारी मोहन यमुना के तट को छोड़कर के गुजरात में समुन्द्र के तट पर जा करके द्वारिका की नगरी में स्थिर हुए और समुन्द्र के तट पर पैदा हुए मोहन यमुना के तट पर आकर के दिल्ली में जीवन के आखिरी सांस लेते हैं
सुदर्शन चक्रधारी मोहन ने उस समय की स्थितियों में हजारों साल पहले भी युद्ध को टालने के लिए संघर्ष को टालने के लिए अपनी बुद्धि का अपने कर्तव्य का अपने सामर्थ्य का अपने चिंतन का भरसक उपयोग किया था और चरखाधारी मोहन ने भी तो एक ऐसा रास्ता चुना स्वतंत्रता के लिए मानवीय मूल्यों के जतन के लिए व्यक्तित्व के मूल तत्वों को सामर्थ्य दे इसके लिए आजादी के जंग को एक ऐसा रूप दिया ऐसा मोड़ दिया जो पूरे विश्व के लिए अजूबा है आज भी अजूबा है
निस्वार्थ सेवा का महत्व हो ज्ञान का महत्व हो या फिर जीवन में तमाम उतारचढ़ाव के बीच मुस्कुराते हुए आगे बढ़ने का महत्व हो ये हम भगवान कृष्ण के सन्देश से सीख सकते हैं और इसीलिये तो श्रीकृष्ण जगतगुरु के रूप में भी जाने गए हैं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम
आज जब हम उत्सवों की चर्चा कर रहे हैं तब भारत एक और बड़े उत्सव की तैयारी में जुटा है और भारत ही नहीं पूरी दुनिया में भी उसकी चर्चा है
मेरे प्यारे देशवासियो मैं बात कर रहा हूँ महात्मा गाँधी की 150वीं जयन्ती
2 अक्टूबर 1869 पोरबन्दर समुद्र के तट पर जिसे आज हम कीर्ति मंदिर कहते हैं उस छोटे से घर में एक व्यक्ति नहीं एक युग का जन्म हुआ था जिसने मानव इतिहास को नया मोड़ दिया नये कीर्तिमान स्थापित करवा दिए
महात्मा गाँधी से एक बात हमेशा जुड़ी रही एक प्रकार से उनके जीवन का वो हिस्सा बनी रही और वह थी सेवा सेवाभाव सेवा के प्रति कर्तव्यपरायणता
उनका पूरा जीवन देखें तो साउथ अफ्रीका में उन समुदायों के लोगों की सेवा की जो नस्लीय भेदभाव का सामना कर रहे थे
उस युग में वो बात छोटी नहीं थी जी
उन्होंने उन किसानों की सेवा की जिनके साथ चम्पारण में भेदभाव किया जा रहा था उन्होंने उन मिल मजदूरों की सेवा की जिन्हें उचित मजदूरी नहीं दी जा रही थी उन्होंने ग़रीब बेसहारा कमजोर और भूखे लोगों की सेवा को अपने जीवन का परम कर्तव्य माना
रक्तपित्त के सम्बन्ध में कितनी भ्रमणाएँ थी उन भ्रमणाओं को नष्ट करने के लिये स्वयं रक्तपित्त से ग्रस्त लोगों की सेवा ख़ुद करते थे और स्वयं के जीवन में सेवा के माध्यम से उदाहरण प्रस्तुत करते थे
सेवा उन्होंने शब्दों में नहीं जी करके सिखायी थी
सत्य के साथ गांधी का जितना अटूट नाता रहा है सेवा के साथ भी गाँधी का उतना ही अनन्य अटूट नाता रहा है
जिस किसी को जब भी जहाँ भी जरुरत पड़ी महात्मा गाँधी सेवा के लिए हमेशा उपस्थित रहे
उन्होंने ना केवल सेवा पर बल दिया बल्कि उसके साथ जुड़े आत्मसुख पर भी जोर दिया
सेवा शब्द की सार्थकता इसी अर्थ में है कि उसे आनंद के साथ किया जाए सेवा परमो धर्मः
लेकिन साथसाथ उत्कृष्ट आनंद स्वान्त सुखायः इस भाव की अनुभूति भी सेवा में अन्तर्निहित है
ये बापू के जीवन से हम भलीभांति समझ सकते हैं
महात्मा गाँधी अनगिनत भारतीयों की तो आवाज बने ही लेकिन मानव मूल्य और मानव गरिमा के लिए एक प्रकार से वे विश्व की आवाज बन गये थे
महात्मा गाँधी के लिए व्यक्ति और समाज मानव और मानवता यही सब कुछ था
चाहे अफ्रीका में फीनिक्स फार्म हो या टॉलस्टॉय फार्म साबरमती आश्रम हो या वर्धा सब स्थानों पर अपने एक अनोखे अंदाज में समाज संवर्धन कम्यूनिटी मोबिलाइजेशन पर उनका हमेशा बल रहा
ये मेरा बहुत ही सौभाग्य रहा है कि मुझे पूज्य महात्मा गाँधी से जुड़ी कई महत्वपूर्ण जगहों पर जाकर के नमन करने का अवसर मिला है
मैं कह सकता हूँ कि गाँधी सेवाभाव से संगठनभाव को भी बल देते रहते थे
समाजसेवा और समाजसंवर्धन कम्यूनिटी सर्वाइस और कम्यूनिटी मोबिलाइजेशन यह वो भावना जिसे हमें अपने व्यवाहारिक जीवन में लाना है
सही अर्थों में यही महात्मा गाँधी को सच्ची श्रद्धांजलि है सच्ची कार्यांजलि है
इस प्रकार के अवसर तो बहुत आते हैं हम जुड़ते भी हैं लेकिन क्या गाँधी 150 ऐसे ही आकर के चला जाये हमें मंजूर है क्या जी नहीं देशवासियो
हम सब अपने आप से पूछें चिंतन करें मंथन करें सामूहिक रूप से बातचीत करें
हम समाज के और लोगों के साथ मिलकर के सभी वर्गों के साथ मिलकर के सभी आयु के लोगों के साथ मिलकर के गाँव हो शहर हो पुरुष हो स्त्री हो सब के साथ मिलकर के समाज के लिये क्या करें एक व्यक्ति के नाते मैं उन प्रयासों में क्या जोडूं
मेरी तरफ से वैल्यू एडिशन क्या हो और सामूहिकता की अपनी एक ताकत होती है
इस पूरे गाँधी 150 के कार्यक्रमों में सामूहिकता भी हो और सेवा भी हो
क्यों ना हम मिलकर के पूरा मोहल्ला निकल पड़े
अगर हमारी फुटबाल की टीम है तो फ़ुटबाल की टीम फ़ुटबाल तो खेलेंगे ही लेकिन एकआध गाँधी के आदर्शों के अनुरूप सेवा का काम भी करेंगे
हमारी लेडीज क्लब है
आधुनिक युग के लेडीज क्लब के जो काम होते हैं वो करते रहेंगे लेकिन लेडीज क्लब की सभी सखियाँ मिलकर के कोई ना कोई एक सेवा कार्य साथ मिलकर के करेंगे
बहुत कुछ कर सकते हैं
किताबें इकट्ठी करें पुरानी ग़रीबों को बांटें ज्ञान का प्रसार करें और मैं मानता हूँ शायद 130 करोड़ देशवासियों के पास 130 करोड़ कल्पनायें हैं 130 करोड़ उपक्रम हो सकते हैं
कोई सीमा नहीं है जो मन में आये बस सदइच्छा हो सदहेतु हो सदभाव हो और पूर्ण समर्पण भाव की सेवा हो और वो भी स्वांत सुखाय एक अनन्य आनंद की अनुभूति के लिये हो
मेरे प्यारे देशवासियो कुछ महीने पहले मैं गुजरात में दांडी गया था
आजादी के आंदोलन में नमक सत्याग्रह दांडी एक बहुत ही बड़ा महत्वपूर्ण टर्निंग पॉइंट है
दांडी में मैंने महात्मा गाँधी को समर्पित अतिआधुनिक एक म्यूजियम का उद्घाटन किया था
मेरा आपसे जरूर आग्रह है कि आप भी आने वाले समय में महात्मा गाँधी से जुड़ी कोईनकोई एक जगह की यात्रा जरूर करें
यह कोई भी स्थान हो सकता है जैसे पोरबंदर हो साबरमती आश्रम हो चंपारण हो वर्धा का आश्रम हो और दिल्ली में महात्मा गाँधी से जुड़े हुए स्थान हो आप जब ऐसी जगहों पर जाएँ तो अपनी तस्वीरों को सोशल मीडिया पर साझा जरुर करें ताकि अन्य लोग भी उससे प्रेरित हों और उसके साथ अपनी भावनाओं को व्यक्त करने वाले दोचार वाक्य भी लिखिए
आपके मन के भीतर से उठे हुए भाव किसी भी बड़ी साहित्य रचना से ज्यादा ताक़तवर होंगे और हो सकता है आज के समय में आपकी नज़र में आपकी कलम से लिखे हुए गाँधी का रूप शायद ये अधिक रिलेवेंट भी लगे
आने वाले समय में बहुत सारे कार्यक्रमों प्रतियोगिताओं प्रदर्शनियों की योजना भी बनाई गई है
लेकिन इस संदर्भ में एक बात बहुत रोचक है जो मैं आपसे साझा करना चाहता हूँ
वेनाइस बिएनाले नाम का एक बहुत प्रसिद्ध आर्ट शो है
जहाँ दुनिया भर के कलाकार जुटते है
इस बार वेनाइस बिएनाले के इंडिया पैविलियन में गाँधी जी की यादों से जुड़ी बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रदर्शनी लगाई गई
इसमें हरिपुरा पैनल्स विशेष रूप से दिलचस्प थे
आपको याद होगा कि गुजरात के हरीपुरा में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था जहाँ पर सुभाष चन्द्र बोस के प्रेसिडेंट इलेक्ट होने की घटना इतिहास में दर्ज है
इन आर्ट पैनल्स का एक बहुत ही खूबसूरत अतीत है
कांग्रेस के हरिपुरा सेशन से पहले 193738 में महात्मा गाँधी ने शांति निकेतन कला भवन के तत्कालीन प्रिंसिपल नन्द लाल बोस को आमन्त्रित किया था
गाँधी जी चाहते थे कि वे भारत में रहने वाले लोगों की जीवनशैली को कला के माध्यम से दिखाए और उनकी इस आर्ट वर्क का प्रदर्शन अधिवेशन के दौरान हो
ये वही नन्द लाल बोस है जिनका आर्ट वर्क हमारे संविधान की शोभा बढ़ाता है
संविधान को एक नई पहचान देता है
और उनकी इस कला साधना ने संविधान के साथसाथ नन्द लाल बोस को भी अमर बना दिया है
नन्द लाल बोस ने हरिपुरा के आसपास के गाँव का दौरा किया और अंत में ग्रामीण भारत के जीवन को दर्शाते हुए कुछ आर्ट कैनवास बनाये
इस अनमोल कलाकारी की वेनाइस में जबरदस्त चर्चा हुई
एक बार फिर गाँधी जी की 150वीं जन्म जयंती पर शुभकामनाओं के साथ हर हिन्दुस्तानी से कोई न कोई संकल्प की मैं अपेक्षा करता हूँ
देश के लिए समाज के लिए किसी और के लिए कुछ न कुछ करना चाहिए
यही बापू को अच्छी सच्ची प्रमाणिक कार्यांजलि होगी
माँ भारती के सपूतों आपको याद होगा कि पिछले कुछ सालों में हम 2 अक्टूबर से पहले लगभग 2 सप्ताह तक देशभर में स्वच्छता ही सेवा अभियान चलाते है
इस बार ये 11 सितम्बर से शुरू होगा
इस दौरान हम अपनेअपने घरों से बाहर निकल कर श्रमदान के ज़रिये महात्मा गाँधी को कार्यांजलि देंगे
घर हो या गलियाँ चौकचौराहे हो या नालियाँ स्कूल कॉलेज से लेकर सभी सार्वजनिक स्थलों पर स्वच्छता का महा अभियान चलाना है
इस बार प्लास्टिक पर विशेष जोर देना है 15 अगस्त को लाल किले से मैंने ये कहा कि जिस उत्साह व ऊर्जा के साथ सवासौ करोड़ देशवासियों ने स्वच्छता के लिए अभियान चलाया
खुले में शौच से मुक्ति के लिए कार्य किया
उसी प्रकार हमें साथ मिलकर सिंगल उसे प्लास्टिक के इस्तमाल को खत्म करना है
इस मुहीम को लेकर समाज के सभी वर्गों में उत्साह है
मेरे कई व्यापारी भाइयोंबहनों ने दुकान में एक तख्ती लगा दी है एक प्लेकार्ड लगा दिया है
जिस पर यह लिखा है कि ग्राहक अपना थैला साथ ले करके ही आये
इससे पैसा भी बचेगा और पर्यावरण की रक्षा में वे अपना योगदान भी दे पायेंगे
इस बार 2 अक्टूबर को जब बापू की 150वीं जयंती मनायेंगे तो इस अवसर पर हम उन्हें न केवल खुले में शौच से मुक्त भारत समर्पित करेंगे बल्कि उस दिन पूरे देश में प्लास्टिक के खिलाफ एक नए जनआंदोलन की नींव रखेंगे
मैं समाज के सभी वर्गों से हर गाँव कस्बे में और शहर के निवासियों से अपील करता हूँ करबद्ध प्रार्थना करता हूँ कि इस वर्ष गाँधी जयंती एक प्रकार से हमारी इस भारत माता को प्लास्टिक कचरे से मुक्ति के रूप में हम मनाये
2 अक्टूबर विशेष दिवस के रूप में मनायें
महात्मा गाँधी जयंती का दिन एक विशेष श्रमदान का उत्सव बन जाए
देश की सभी नगरपालिका नगरनिगम जिलाप्रशासन ग्रामपंचायत सरकारीगैरसरकारी सभी व्यवस्थाएँ सभी संगठन एकएक नागरिक हर किसी से मेरा अनुरोध है कि प्लास्टिक कचरे के कलेक्शन और स्टोरेज के लिए उचित व्यवस्था हो
मैं कॉर्पोरेट सेक्टर से भी अपील करता हूँ कि जब ये सारा प्लास्टिक वास्ते इकठ्ठा हो जाए तो इसके उचित निस्तारण हेतु आगे आयें डिस्पोजल की व्यवस्था हो
इसे रिसाइकिल किया जा सकता है
इसे ईंधन बनाया जा सकता है
इस प्रकार इस दिवाली तक हम इस प्लास्टिक कचरे के सुरक्षित निपटारे का भी कार्य पूरा कर सकते है
बस संकल्प चाहिए
प्रेरणा के लिए इधरउधर देखने की जरुरत नहीं है गाँधी से बड़ी प्रेरणा क्या हो सकती है
मेरे प्यारे देशवासियों हमारे संस्कृत सुभाषित एक प्रकार से ज्ञान के रत्न होते हैं
हमें जीवन में जो चाहिए वो उसमे से मिल सकता है
इन दिनों तो मेरा संपर्क बहुत कम हो गया है लेकिन पहले मेरा संपर्क बहुत था
आज मैं एक संस्कृत सुभाषित से एक बहुत महत्वपूर्ण बात को स्पर्श करना चाहता हूँ और ये सदियों पहले लिखी गई बातें हैं लेकिन आज भी इसका कितना महत्व है
एक उत्तम सुभाषित है और उस सुभाषित ने कहा है
पृथिव्यां त्रीणि रत्नानि जलमन्नं सुभाषितम्
मूढैः पाषाणखण्डेषु रत्नसंज्ञा प्रदीयते
यानि कि पृथ्वी में जल अन्न और सुभाषित यह तीन रत्न है
मूर्ख लोग पत्थर को रत्न कहते हैं
हमारी संस्कृति में अन्न की बहुत अधिक महिमा रही है
यहाँ तक कि हमने अन्न के ज्ञान को भी विज्ञान में बदल दिया है
संतुलित और पोषक भोजन हम सभी के लिए जरुरी है
विशेष रूप से महिलाओं और नवजात शिशुओं के लिए क्योंकि ये ही हमारे समाज के भविष्य की नींव है
पोषण अभियान के अंतर्गत पूरे देशभर में आधुनिक वैज्ञानिक तरीकों से पोषण को जनआन्दोलन बनाया जा रहा है
लोग नए और दिलचस्प तरीकों से कुपोषण से लड़ाई लड़ रहे हैं
कभी मेरे ध्यान में एक बात लाई गई थी
नाशिक के अन्दर मुट्ठी भर धान्य एक बड़ा आन्दोलन हो गया है
इसमें फसल कटाई के दिनों में आंगनवाड़ी सेविकाएँ लोगों से एक मुट्ठी अनाज इकठ्ठा करती हैं
इस अनाज का उपयोग बच्चों और महिलाओं के लिए गर्म भोजन बनाने में किया जाता है
इसमें दान करने वाला व्यक्ति एक प्रकार से जागरुक नागरिक समाज सेवक बन जाता है
इसके बाद वो इस ध्येय के लिए खुद भी समर्पित हो जाता है
उस आन्दोलन का वो एक सिपाही बन जाता है
हम सभी ने परिवारों में हिंदुस्तान के हर कोने में अन्न प्राशन संस्कार के बारे में सुना है
ये संस्कार तब किया जाता है जब बच्चे को पहली बार ठोस आहार खिलाना शुरू करते हैं
लिक्विड फूड नही सोलिड फूड
गुजरात ने 2010 में सोचा कि क्यूँ न अन्न प्राशन संस्कार के अवसर पर बच्चों को कॉम्प्लीमेंट्री फूड दिया जाये ताकि लोगों को इसके बारे में जागरुक किया जा सके
यह एक बहुत ही शानदार पहल है जिसे हर कहीं अपनाया जा सकता है
कई राज्यों में लोग तिथि भोजन अभियान चलाते हैं
अगर परिवार में जन्मदिन हो कोई शुभदिन हो कोई स्मृति दिवस हो तो परिवार के लोग पौष्टिक खाना स्वादिष्ट खाना बनाकर के आंगनवाड़ी में जाते हैं स्कूलों में जाते हैं और परिवार के लोग खुद बच्चों को परोसते हैं खिलाते हैं
अपने आनंद को भी बाँटते हैं और आनंद में इज़ाफा करते हैं
सेवाभाव और आनंदभाव का अद्भुत मिलन नज़र आता है
साथियों ऐसी कई सारी छोटीछोटी चीजें हैं जिससे हमारा देश कुपोषण के खिलाफ़ एक प्रभावी लड़ाई लड़ सकते हैं
आज जागरूकता के आभाव में कुपोषण से ग़रीब भी और संपन्न भी दोनों ही तरह के परिवार प्रभावित हैं
पूरे देश में सितम्बर महीना पोषण अभियान के रूप में मनाया जाएगा
आप जरुर इससे जुड़िये जानकारी लीजिये कुछ नया जोड़ियें
आप भी योगदान दीजिये
अगर आप एकाध व्यक्ति को भी कुपोषण से बाहर लाते हैं मतलब हम देश को कुपोषण से बाहर लाते हैं
हेलो सर मेरा नाम सृष्टि विद्या है और मैं 2nd यियर की स्टूडेंट हूँ
सर मैंने ट्वेल्व ऑगस्ट को आपका एपिसोड देखा था बियर ग्रिल्स के साथ जिसमें आप आये थे
तो सर मुझे वो आपका एपिसोड देखकर बहुत अच्छा लगा
फर्स्ट ओएफ अल्ल तो ये सुनकर अच्छा लगा कि आपको हमारे नेचर वाइल्ड लाइफ एंड एनवायर्नमेंट की कितनी ज्यादा फ़िक्र है कितनी ज्यादा केयर है और सर मुझे बहुत अच्छा लगा आपको इस नये रूप में एक एडवेंचरस रूप में देख के
तो सर मैं जानना चाहूंगी कि आपको इस एपिसोड के दौरान एक्सपीरियंस कैसा रहा और सिर लास्ट में एक बात और अद्द करना चाहूंगी कि आपका फिटनेस लेवेल देख कर हम जैसे यंगस्टर बहुत ज्यादा इम्प्रेस और बहुत ज्यादा मोटीवेट हुए हैं आपको इतना फिट एंड फाइन देखकर
सृष्टि जी आपके फ़ोन कॉल के लिए धन्यवाद्
आपकी ही तरह हरियाणा में सोहना से केकेपाण्डेय जी और सूरत की ऐश्वर्या शर्मा जी के साथ कई लोगों ने डिस्कवरी चैनल पर दिखाये गये मन वीएस
वाइल्ड एपिसोड के बारे में जानना चाहा है
इस बार जब मन की बात के लिए मैं सोच रहा था तो मुझे पक्का भरोसा था कि इस विषय में बहुत सारे सवाल आयेंगे और हुआ भी ऐसा ही और पिछले कुछ हफ़्तों में मैं जहाँ भी गया लोगों से मिला हूँ वहाँ मन वीएस
वाइल्ड का भी ज़िक्र आ ही जाता है
इस एक एपिसोड से मैं न सिर्फ हिंदुस्तान दुनिया भर के युवाओं से जुड़ गया हूँ
मैंने भी कभी सोचा नही था कि युवा दिलों में इस प्रकार से मेरी जगह बन जायेगी
मैंने भी कभी सोचा नही था कि हमारे देश के और दुनिया के युवा कितनी विविधता भरी चीजों की तरफ ध्यान देते हैं
मैंने भी कभी सोचा नही था कि कभी दुनिया भर के युवा के दिल को छूने का मेरी ज़िन्दगी में अवसर आयेगा
और होता क्या है अभी पिछले सप्ताह मैं भूटान गया था
मैंने देखा है कि प्रधानमंत्री के रूप में मुझे जब से जहाँ भी जाने का अवसर मिला और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के कारण से स्थिति ये बन गई है कि दुनिया में जिस किसी के पास जाता हूँ बैठता हूँ तो कोई न कोई पाँचसात मिनट तो योग के संबंध में मेरे से सवालजवाब करते ही करते हैं
शायद ही दुनिया का कोई बड़ा ऐसा नेता होगा जिसने मेरे से योग के संबंध में चर्चा न की हो और ये सारी दुनिया में मेरा अनुभव आया है
लेकिन इन दिनों एक नया अनुभव आ रहा है
जो भी मिलता है जहाँ भी बात करने का मौका मिलता है
वे वाइल्डलाइफ के विषय में चर्चा करता है एनवायर्नमेंट के सम्बन्ध में चर्चा करता है
टाइगर लियोन जीवसृष्टि और मैं हैरान हूँ कि लोगों की कितनी रूचि होती है
डिस्कवरी ने इस कार्यक्रम को 165 देशों में उनकी भाषा में प्रसारित करने की योजना बनाई है
आज जब पर्यावरण ग्लोबल वार्मिंग क्लाइमेट चंगे एक वैश्विक मंथन का दौर चल रहा है
मुझे आशा है कि ऐसे में यह कार्यक्रम भारत का सन्देश भारत की परंपरा भारत के संस्कार यात्रा में प्रकृति के प्रति संवेदनशीलता इन सारी बातों से विश्व को परिचित कराने में ये डिस्कवरी चैनल का ये एपिसोड बहुत मदद करेगा ऐसा मेरा पक्का विश्वास बन गया है और हमारे भारत में क्लाइमेट जस्टिस और क्लीन एनवायर्नमेंट की दिशा में उठाये गए कदमों को अब लोग जानना चाहते हैं
लेकिन एक और इंटरेस्टिंग बात है कुछ लोग संकोच के साथ भी मुझे एक बात जरुर पूछते हैं कि मोदी जी बताइये आप हिन्दी बोल रहे थे और बियर ग्रिल्स हिंदी जानते नहीं हैं तो इतना तेजी से आपके बीच सवांद कैसे होता था ये क्या बाद में एडिट किया हुआ है ये इतना बारबार शूटिंग हुआ है क्या हुआ है बड़ी जिज्ञासा के साथ पूछते हैं
देखिये इसमें कोई रहस्य नहीं है
कई लोगों के मन में ये सवाल है तो मैं इस रहस्य को खोल ही देता हूँ
वैसे वो रहस्य है ही नहीं
रियालिटी तो यह है कि बियर ग्रिल्स के साथ बातचीत में टेक्नोलॉजी का भरपूर इस्तेमाल किया गया
जब मैं कुछ भी बोलता था तो तुरंत ही अंग्रेजी में सिमल्टेनियस अनुवाद होता था
सिमल्टेनियस इंटरप्रिटेशन होता था और बियर ग्रिल्स के कान में एक कॉर्डलेस छोटा सा इंस्ट्रूमेंट लगा हुआ था
तो मैं बोलता था हिंदी लेकिन उसको सुनाई देता था अंग्रेजी और उसके कारण संवाद बहुत आसान हो जाता था और टेक्नोलॉजी का यही तो कमाल है
इस शो के बाद बड़ी संख्या में लोग मुझे जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के विषय में चर्चा करते नजर आए हैं
आप लोग भी नेचर और वाइल्ड लाइफ प्रकृति और जन्यजीवों से जुड़े स्थलों पर जरुर जाएं
मैंने पहले भी कहा है मैं जरुर कहता हूँ आपको
अपने जीवन में नॉर्थईस्ट जरुर जाइये
क्या प्रकृति है वहाँ
आप देखते ही रह जायेंगें
आपके भीतर का विस्तार हो जाएगा
15 अगस्त को लाल किले से मैंने आप सभी से आग्रह किया था कि अगले 3 वर्ष में कमसेकम 15 स्थान और भारत के अन्दर 15 स्थान और पूरी तरह 100 टूरिज्म के लिए ही ऐसे 15 स्थान पर जाएं देखें अध्य्यन करें परिवार को लेकर जाएं कुछ समय वहाँ बिताएं
विविधिताओं से भरा हुआ देश आपको भी ये विविधिताएं एक शिक्षक के रूप में आपको भी भीतर से विविधिताओं से भर देंगे
आपका अपने जीवन का विस्तार होगा
आपके चिंतन का विस्तार होगा
और मुझपे भरोसा कीजिए हिंदुस्तान के भीतर ही ऐसे स्थान हैं जहाँ से आप नई स्फूर्ति नया उत्साह नया उमंग नई प्रेरणा ले करके आएंगें और हो सकता है कुछ स्थानों पर तो बारबार जाने का मन आपको भी होगा आपके परिवार को भी होगा
मेरे प्यारे देशवासियो भारत में पर्यावरण की केयर और कॉन्सर्न यानि देखभाल की चिंता स्वाभाविक नजर आ रही है
पिछले महीने मुझे देश में टाइगर सेंसस जारी करने का सौभाग्य मिला था
क्या आप जानते हैं कि भारत में कितने बाघ हैं भारत में बाघों की आबादी 2967 है
त्वो थाउसेंड नाइन हंड्रेड सिक्सटी seven
कुछ साल पहले इससे आधे भी बड़ी मुश्किल से थे हम
बाघों को लेकर 2010 में रूस के सैंट पीटर्सबर्ग में टाइगर सम्मित हुआ था
इसमें दुनिया में बाघों की घटती संख्या को लेकर चिंता जाहिर करते हुए एक संकल्प लिया गया था
यह संकल्प था ट्वेंटी ट्वेंटी त्वो 2022 तक पूरी दुनिया में बाघों की संख्या को दोगुना करना
लेकिन यह न्यू इंडिया है हम लक्ष्यों को जल्दी से जल्द पूरा करते हैं
हमनें 2019 में ही अपने यहाँ टाइगर की संख्या दोगुनी कर दी
भारत में सिर्फ बाघों की संख्या ही नहीं बल्कि प्रोटेक्टेड एरियास और कम्यूनिटी रिजर्व्स की संख्या भी बढ़ी हैं
जब मैं बाघों का दाता रिलीज कर रहा था तो मुझे गुजरात के गीर के शेर की भी याद आई
जब मैंने वहाँ मुख्यमंत्री का दायित्व संभाला था
तब गीर की जंगलों में शेरों का हैबिटेट सिकुड़ रहा था
उनकी संख्या कम होती जा रही थी
हमनें गीर में एक के बाद एक कई कदम उठाए
2007 में वहाँ महिला गार्ड्स को तैनात करने का फैसला लिया
पर्यटन को बढ़ाने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार किए
जब भी हम प्रकृति और वन्यजीवों की बात करते हैं तो केवल कंजर्वेशन की ही बात करते हैं
लेकिन अब हमें कंजर्वेशन से आगे बढ़ कर कम्पैशन को लेकर सोचना ही होगा
हमारे शास्त्रों में इस विषय में भी बहुत अच्छा मार्गदर्शन मिला है
सदियों पहले हमारे शास्त्रों में हमनें कहा है
निर्वनो बध्यते व्याघ्रो निर्व्याघ्रं छिद्यते वनम
तस्माद् व्याघ्रो वनं रक्षेत् वनं व्याघ्रं न पालयेत्
अर्थात यदि वन न हों तो बाघ मनुष्य की आबादी में आने को मजबूर हो जाते हैं और मारे जाते हैं और यदि जंगल में बाघ न हों तो मनुष्य जंगल काटकर उसे नष्ट कर देता है इसलिए वास्तव में बाघ वन की रक्षा करता है न कि वन बाघ की कितने उत्तम तरीके से विषय को हमारे पूर्वजों ने समझाया है
इसलिए हमें अपने वनों वनस्पतियों और वन्य जीवों का न केवल संरक्षण करने की आवश्यकता है बल्कि ऐसा वातावरण भी बनाना होगा जिससे वे सही तरीके से फलफूल सकें
मेरे प्यारे देशवासियो 11 सितम्बर 1893 आइटीन नाइनटी थ्री स्वामी विवेकानंद जी का ऐतिहासिक भाषण कौन भूल सकता है
पूरे विश्व की मानव जाति को झकझोर करने वाला भारत का ये युवा सन्यासी दुनिया के अन्दर भारत की एक तेजस्वी पहचान छोड़ करके आ गया
जिस गुलाम भारत की तरफ दुनिया बड़ी विकृत भाव से देख रही थी
उस दुनिया को 11 सितम्बर 1893 स्वामी विवेकानंद जैसे महापुरुष के शब्दों ने दुनिया को भारत की तरफ देखने का नज़रिया बदलने के लिए मजबूर कर दिया
आइये स्वामी विवेकानंद जी ने जिस भारत के रूप को देखा था
स्वामी विवेकानंद जी ने भारत के जिस सामर्थ्य को जाना था
हम उसे जीने की कोशिश करें
हमारे भीतर है सबकुछ है
आत्मविश्वास के साथ चल पड़ें
मेरे प्यारे देशवासियो आप सभी को याद होगा कि 29 अगस्त को राष्ट्र खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है
इस अवसर पर हम देश भर में फिट इंडिया मूवमेंट लॉन्च करने वाले हैं
खुद को फिट रखना है
देश को फिट बनाना है
हर एक के लिए बच्चे बुजुर्ग युवा महिला सब के लिए ये बड़ा इंटरेस्टिंग अभियान होगा और ये आपका अपना होगा
लेकिन उसकी बारीकियां आज मैं बताने नहीं जा रहा हूँ
29 अगस्त का इंतजार कीजिये
मैं खुद उस दिन विस्तार से विषय में बताने वाला हूँ और आपको जोड़े बिना रहने वाला नहीं हूँ
क्योंकि आपको मैं फिट देखना चाहता हूँ
आपको फिटनेस के लिए जागरूक बनाना चाहता हूँ और फिट इंडिया के लिए देश के लिए हम मिल करके कुछ लक्ष्य भी निर्धारित करें
मेरे प्यारे देशवासियो मुझे आपका इंतजार रहेगा 29 अगस्त को फिट इंडिया में
सितम्बर महीने में पोषण अभियान में
और विशेषकर 11 सितम्बर से 02 अक्टूबर स्वच्छता अभियान में
और 02 अक्टूबर टोटली डेडिकेटेड प्लास्टिक के लिए
प्लास्टिक से मुक्ति पाने के लिए हम सब घर घर के बाहर सब जगह से पूरी ताकत से लगेंगे और मुझे पता है ये सारे अभियान सोशल मीडिया में तो धूम मचा देंगे
आइये एक नए उमंग नए संकल्प नई शक्ति के साथ चल पड़ें
मेरे प्यारे देशवासियो आज मन की बात में इतना ही
फिर मिलेंगे
मैं आपकी बातों का आपके सुझावों का इंतजार करूँगा
आइये हम सब मिल करके आजादी के दीवानों के सपनों का भारत बनाने के लिए गांधी के सपनों को साकार करने के लिए चल पड़ें स्वान्त सुखाय
भीतर के आनंद को सेवा भाव से प्रकट करते हुए चल पड़ें
बहुतबहुत धन्यवाद